ई बहुत धुप है और पेड़-पौधे हैं और यहाँ पर --

औरत को लेकर जा रहे है और यहाँ पर दूर-दूर तक बिजली का खम्भे है और बिजली की तारे है ।

यह एक दुकान है एनुअल स्टोर लिखा हुआ है और वो नीले --

आदमी यहाँ पर है और यहाँ बेड बहुत सारे है मरीजों के लिए और --

सिवाराम होटल है यहाँ पे सिवाराम होटल लिख हुआ है।

पीला रंग का गुब्बारा रखा हुआ है और यहाँ पे गेट इन का हरा कलर पोताई किया गया है।

खिड़की पर बन्दर बैठा हुआ है।

दीवाल कम्प्लीट हो गया है बस अब --

यहाँ पे गुरुकुल डिग्री कॉलेज लिखा हुआ है।